यह घर पूरी तरह कस से टूटी-फूटी है और इन घरों में जंगल जैसे झाड़ी उग गए हैं।

यह एक वस्त्रालय है यह वस्त्रालय में कपड़े मिलते हैं।

और यहां पर एक दूल्हा-दुल्हन फोटो घिचा रहे हैं।